पीछे एक रेड कलर का बोर्ड है जो लर्निंग लिखा हुआ है क्लासमेट है।

और पीछे बगल में एक अ खिड़की है लोहे की।

एक लकड़ी रखा हुआ है बाहर कुछ ईंटे पड़े हुए--

ब्लैक कलर का खंभा है व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।

एक आदमी एक हा आदमी के टैटू बनाना है ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है आदमी ने--

आस पास यहां पे जंगल इलाका है हरे पेड़ है एक आदमी खड़ा है पीछे एक ऑरेंज कलर का मंदिर बना हुआ है।

लड़का सेल्फ़ी ले रहा है फोटो खिंचवा रहा है लड़की ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं और यहां पे ये लोग पूजा कर रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

सामने यहां पे एक झूला है यहां पे बच्चों की गाड़ी है छोटी सी जिसमें बच्चे बैठ के घूमते है बीच में एक गोला सा बना है।

और यहां पे लोग घूमने आए है दूर दूर से यहां पे लोग मस्ती कर रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारी मिट्टी है पानी में गायें भैंस नहा रही हैं यहां पर लोग घूम रहे हैं।